देख सकते हैं। यहाँ पे एक आदमी है जो वर्कआउट कर रहा है। काफी बड़ा जिम है देख सकते हैं। काफी अच्छा लग रहा है जिम देखने में भी काफी ज्यादा बड़ा भी काफी अच्छा है और एक आदमी यहाँ पे उठा रहा है।

तो आप लोग देख सकते हैं यहां पे काफी बड़ा ग्राउंड है। काफी बन बढ़िया लग रहा है देखने में। देख सकते हैं एक रास्ता है और काफी सारे पेड़-पौधे भी हैं देखने में देख सकते हैं और काफी ज्यादा घर है।

काफी कुछ है और अगल बगल में दीवाल के बगल में काफी घर भी है। देख सकते हैं काफी बढ़िया लग रहा है देखने में और साइकिल भी एक बगल में रखी गयी है।

तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन है। काफी बढ़िया है गार्डन देखने में और सामने पेड़ है। काफी बड़ा है देख सकते हैं। काफी बढ़िया लग रहा है।

घर है पेड़ पौधे हैं और एक टीना का छोटा जैसा घर। देख सकते है काफी बढ़िया लग रहा है देखने में और काफी ज्यादा लोहा का तार दिया गया है।

जहां पे देख सकते हैं यहाँ पी.टी वाला आया है और काफी सारे लड़के लड़कियां यहाँ पर पी.टी कर रहे हैं। तरीके से देख सकते हैं।